और सामने बड़े-बड़े पेड़ देख रहे हैं और पास में एक ओर खेत दिखाई दे रहा है जिसमे फसल लगी हुई है और सामने आसमान --

इस में हमें एक खेत दिखाई दे रहा है खेत के पास में ही एक रास्ता दिखाई दे रही है रास्ते में कुछ पत्थर पड़े हुए हैं और--

इस इमेज मे हमे एक बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग का कलर सफेद है और उसमे कांच की खिड़कियां भी लगी हुई है सामने रास्ता दिखाई दे रहा है और बड़े-बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

ओर उसके पास एक गमला दिखाई दे रहा है और नीले रंग की नेट दिखाई दे रही उसके पास में एक ओर मुर्गा दिख रहा है।

चर्च के सामने एक रिक्शा दिखाई दे रही है और कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे हैं सामने एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जो पीले रंग का है और आसमान दिखाई --

एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है एक टीचर सिस्टम दिखाई दे रहा है और एक गेट दिख रहा है।

पंखे चलते दिखाई दे रहे हैं और बेंच दिखाई दे रही है जो काले रंग की है बेंच के पास में काले रंग का एक बैग दिखाई दे रहा है और सामने दीवार दिख रही है।

इस इमेज में हमे एक मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में हमे घास लगी हुई दिखाई दे रही और रास्ता भी दिखाई दे रहा है सामने हमें बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।